हमें यहाँ पर पेट्रोल पम्प भरने वाली मशीन दिखाई दे रही है और हमे यहाँ पर बहुत सारे ट्रक दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है जो की हरे -भरे घासों से भरा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंगे दिखाई दे रही है जो की नीले कलर की दिख रही है और यहाँ पर हमे एक और बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफेद कलर की नजर आ रही है।

और हमें यहां पर एक और मालगाड़ी दिखाई दे रही है जो कि नीले कलर की नज़र आ रही है और हमें यहां पर चढ़ने वाली सीढियां दिखाई दे रही है और यहां पे बहुत सारे खंबे दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पे हमे उसका सफेद कलर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमे बहुत सारे खिड़कियां दिखाई दे रही है जो की बहुत सारी और यहाँ पे एक बिल्डिंग भी है जो की सफेद कलर की नजर आ रही है और यहाँ पे बहुत सारे वायर दिखाई दे रहे है।

और यहां पर एक दीवार दिखाई रही है जो की बहुत दूर तक जाती हुई नज़र आ रही है और ये दीवार का कलर हमें पीला नज़र आ रहा है जो की बहुत अच्छा लग रहा है।

यहाँ पे हमे बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे उतरने चढ़ने वाली सीढ़ियाँ दिखाई दे रही--

बहुत ही बड़ी नदी दिखाई दे रही है जो भी जिसका कलर हमें सफेद दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पर एक नाव दिखाई दे रही है और नाव का कलर हमें काला दिखाई दे रहा है और नाव मे बैठा एक आदमी नजर आ रहा है |

बड़ा होटल दिख रहा है जैसे की अभी -अभी नया- नया खुला हो और यहाँ पे बहुत सारे फुग्गे दिखाई दे रहे है जिसमे एक लाल कलर का दिख रहा है।